यहां पर नीले रंग की कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

वो यहां पर सफाई कर रही हैं।

हमे इस चित्र में बहुत सारे सिलाई मशीन दिखाई दे रही है।

जूते-चप्पल निकले हुए हैं एक --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

एक आदमी दिख रहा है।

कटनी के लिए वो सफेद रंग की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

और लड़कियां बैठी हुई है।

सूखे हुए पेड़ पौधे भी हैं।

एक गिलास पानी का भी रखा हुआ है।

और इन्होंने मग जग भी रखा हुआ है।

में सामने भी बिछा हुआ है।

इस चित्र में हमें यह बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो सफेद रंग की हैं।

पीछे टीलर भी लगा हुआ है छतरी भी है।

सिस्टम भी दिखाई दे रहा है।